कलम और एक फ़ोन भी नज़र आ रहा है और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं पीछे एक पंखा भी नज़र आ रहा है।